एक पिलर है जिसके ऊपर एक लड़की का चित्र बना हुआ है।

इस दृश्य में बहोत सारे स्कूटी है जिसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है स्कूटी उजले रंग के हैं।

उसके बगल में कुछ पौधे उगे हुए हैं और पीछे बहोत सारे घर हैं घर के दरवाजे हैं और यहां पे आसमान भी दिख रहा है।

पीछे में केले का पत्ता है और एक बाइक है पीछे बहुत सारे लाइट जल रहे हैं।

ऊपर में बहोत सारे लाइट जल रहे है यहां कुछ कुर्ता रखा हुआ है।

गार्डन के अंदर एक महिला है जो हरे रंग का कोर्ट पहनी हुई है।

यहीं पे बहुत सारे पौधे हैं कुछ यहां घास हैं।

एक बाइक है जो काले रंग का है उसपे एक रिबन बना हुआ है।

हां एक व्यक्ति है ऊपर में एक बल्ब है।

कुछ प्लास्टिक के अंदर फ्लॉवर लगे हुए हैं।

नीचे पत्थर रखे हुए हैं यहां दीवार कुछ पत्थरों से बने हुए हैं पीछे में बहुत सारे पेड़ हैं।

यहां पे लाइट की रोशनी आ रही है।

यहां पे बहुत सारे आदमी है और बहोत सारे बाइक लगे हुए हैं पीछे में बहुत सारे पेड़ भी है आसमान है।

ऊपर में एक लकड़ी है ऊपर में बहोत सारे हरे हरे घांस लगे हुए हैं किले में।

और कुछ पेड़ है यहां पे एक स्विच बोर्ड है जिसके बगल में बहुत सारे दीवार पर लाइट भी जल रहा है।

इस दृश्य के अंदर एक गैरेज है गैरेज के अंदर एक कार है जो लाल रंग का है।

कुछ रस्सी रखे हुए हैं ऊपर में बहुत सारे छपरे हैं छपरे के बगल में कुछ लोहे के डंटे हैं यहां पे धूप की रोशनी आ रही है।

यहां पे नीचे मैट बिछाया हुआ है जो नीले रंग के हैं और लाल रंग के हैं।

पीछे में एक लोहे का डंटा रखा हुआ है यहां बहोत सारे जिम के यंत्र है ऊपर में एक बैनर लगा हुआ है और एक लाइट भी जल रहा है।

पीछे में एक टेबुल है जिसके पीछे एक चेयर है जिसके बगल में बहुत सारे लोहे के डंडे हैं यहां दीवार का कलर पूरा ग्रीन किया हुआ है एक दरवाजा है।

पेड़ बहोत सारे पीछे दिख रहे हैं आसमान पूरा साफ है।

यहां बहुत सारे आदमी औरत और कुछ बच्चे हैं एक आदमी के हाथ में डंडा है जिसमें बहुत सारे कैंडी लगे हुए हैं जो पिंक कलर के हैं।

इस दृश्य में एक ट्रैक्टर है ट्रैक्टर का डाला है।

इस दृश्य में एक पेट शॉप है जिसके अंदर एक स्विच बोर्ड है जिसमें बहोत सारे तार लगे हुए हैं एक चार्जर है जो काले रंग का है।

पीछे में एक पलंग है और एक कुर्सी है यहां बहुत सारे पेड़ है।

इस दृश्य मे एक घर है घर के अंदर बहुत सारे बेंच लगे हुए हैं।

बहुत सारे आदमी है और एक आदमी खड़ा है।

एक बेंच के ऊपर बोतल रखा हुआ है और एक कॉपी रखा हुआ है पेन है।

इस दृश्य में ग्राउंड है ग्राउंड के ऊपर तीन चार आदमी है।

कुछ यहां बहुत सारे पौधे हैं और एक बाइक है।